यहां पर मुझे बहोत सारे लोग इधर उधर चलते हुए--

जहा पर मुझे बहोत सारे लोग दिख रहे है।

जहां पर मुझे बहोत सारे लोग इधर उधर चलते हुए दिख रहे हैं।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

यहां पर मुझे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख--

बहोत सारे हारे भी दिख रहे हैं।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

जहां पर मुझे एक मंदिर दिख रहा हैं।

यहां पर मुझे एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

यहां पर मुझे बहोत सारे बड़े बड़े से पोस्टर भी देख रहे है जहा पर--